में बहुत सारे खोखे में साड़ियाँ है व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का पीले कलर का खोखियाँ हैं।

है सामने सिट कैफ़े है ये ब्लैक कलर का बो बोर्ड लगा हुआ है।

ये बहुत सारे सरिए लगे है खम्बे लगे है यह छत्त का काम हो रहा है बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

उसमे चड़ाव लगी हुई है बहुत सारे पेड़-पौधे लगे है।

यह एक मंदिर बना है माता जी का गणेश जी का कालका माता के मूर्तियाँ रखी हुई है।